इस तस्वीरमें हमे एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जहा पर हम एक व्यक्ति को एक खुर्ची पर बैठा हुआ देख पा रहे है वह फोन चला रहा है।

इस तस्वीर मे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है जहा पे रक्षाबंधन वाली राखियाँ बिक रही है।

उनके पीछे वाले हिस्से मे छो छोटे से जगह मे पानी भरा हुआ है। वह उसका फ़ैन्सिंग से ढका गया है इस तस्वीर मे हम औरतों के साथ काफी सारी छोटी बच्चियों को भी देख सकते है।

इस तस्वीर मे हमे एक चर्च के अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है जहा पे हमे दीवार पर एक लाल रंग का क्रॉस देख सखते है।

उसके किनारे हमे पौधों के गमले दिखाई दे रहे है व उसके बगल मे लाइन से दुकाने भी देख पा रहे रहे है जहा पे हमे एक कैस्ट्रॉल की दुकान दिखाई दे रही है।